कुछ लोग भांट में हेलमेट लेके टेहल रहे हैं पैर में स्लीपर पेहने हुआ है और कुछ लोग ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं।

यह फोटो दिख रहा है किसी शॉपिंग मॉल का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है। लाल येलो ग्रीन दिखाई दे रहा है।

और साइड में झोला टंगा हुआ है और चिप्स कुरकुरे शिखर और कुछ ट्रॉफियां दिखाई दे रही हैं जो काफी देखने में खूबसूरत लग रहा है।

फील्ड का फोटो है जिसमें एक सुपर स्प्लेंडर बाइक दिखाई दे रहा है।

और एक महिला नीचे खरा है और एक व्यक्ति पीछे हाथ करके खरा है और एक व्यक्ति गेट के अंदर दिख रा है।

यह हाई हाईटेक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो दिल्ली में स्थित है न्यू दिल्ली में इस इस--

यहां गुप्ता फ्लावर्स की दुकान है जिसमें ऊपर मोबाइल नंबर दिया गया है जो व्हाट्सएप नंबर भी है एक साइकिल पे काफी सारा फुल टंगा हुआ है।

यह एक छत ढलाई का फोटो जिसमें कुछ मजदूर काम कर रहे हैं माथा पे अपना गमछा बांधे हुए हैं।

बगहा बिहार में पड़ता है बिहार स्टेट है बगहा एक बिहार के जिला के अंतर्गत आता है।

यह किसी हॉस्पिटल का फोटो दिखाई दे रहा है जो कोरोना काल की फोटो है जो एक व्यक्ति पूरा--